और पिचपीछे एक बड़ा सा एक घर बना है और उसके बगल में बड़े सा एक पेड़ खड़ा है। एक लोहे का --

सामने बड़ा-सा ए सामने एक बड़ा-सा डैम है और उसके चारों तरफ से पानी बह रहा है।

उसके आगे एक मोटरसाइकिल खड़ी हुई है। बगल से कुछ लोग बैठे हुए हैं और एक बाल्टी रखडस्टबिन है जो ब्लू कलर की है और उसके आगे कुछ एक आदमी है जो कि व्हाइट --

बगल से चारों तरफ से फर्नीचर लगी हुई है ब्लैक कलर की सामने एक लड़का है बगल से एक और लड़का है और जो भी अ जो भी कुछ --

सामने एक इम अ एक घर सा दिख रहा है। एक लोहे का गेट लगा हुआ है जोकि ब्लैक कलर के लोहे के जालिया का गेट है।

व्हाइट कलर का एक गेट बना हुआ है। लोहे का गेट है। ऊपर जाली लगी है जो कि --

सामने पानी से भरा हुआ तालाब है। बड़े-बड़े पे एक सामने बड़ा-सा पेड़ है जो कि सुखा पेड़ है।